और इस रामा हॉस्पिटल के द्वारे कई सारी गाड़िया वगैरा खड़ी हुई है। इस रामा हॉस्पिटल के बगल में एक मेडिकल है और वो मेडिकल बंद है।

और इस लॉज के अंदर कई सारी कुर्सी वगैरह डली हुई हैं और कई सारी प्रकार की बेहतरीन लाइट वगैरह भी सजावाई गई हैं। और ये लोग --

और उस मकान के बाहर एक पानी वाला हैंड पंप भी लगा हुआ है।